और इसके अंदर ये बा जो हम्म बस है मतलब कार है वो खड़ी हुई है एक लड़का यहा पे खड़ा हुआ है कार पे हात रखकर दोनों--

ऐसा लग रहा है जैसे किसी का घर बन रहा है नीचे तार बिछे हुए हैं और मतलब कोई जो सिलावट रहते हैं ये घर बना रहे है मिस्त्री।

और ये कागज़ से कुछ बना रही हैं किसी के पास फेवीकॉल है किसी के पास शीट है अम्म मतलब इनके पास सभी चीज़ें हैं और कुच बना रहे हैं।

यहां पे एक पेड़ जैसा बना हुआ है और जिस पे एक लड़का खड़ा हुआ है और इसको शूज़ पहने हुए हैं रेड कलर के ब्लैक जीन्स पहने हुए है शर्ट पहनी हुई है छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है और --

यहा पे कोई उन बना रहा है एक लड़का बैठा हुआ है जो उन बना रहा है। नीचे से एक अंकल उसके निकाल रहे है और ये व्हाइट कलर मे दिखाई दे रहा है और मतलब अ कुछ अजीब सा ही लग रहा है।

यह बच्चो के झूले जहा पे दिखाई दे रहे है सीढ़ि वगैरा लगी है जिसे दो-तीन बच्चे चढ़ रहे है और काफी सारे बच्चे यहाँ पे मतलब खड़े हुए भी है कोई झुला झूल रहा है।

बना रहे हैं रिब्बिन वगैरह इनके पास रखा हुआ हैं और काफी सारे मतलब बच्चे हैं ये बैठे हुए हैं कुछ बना रहे हैं पीछे गमला रखी हुई हैं दवाल दिखाई दे रही हैं। जो रेड दि --

यहां पे कोई सा मदरसा जैसा दिखाई दे रहा हैं दो-तीन मुसलमान बैठे हुए हैं खड़ा हुआ हैं दो खड़े हुए हैं एक पोस्टर भी लगा हुआ हैं जिस पर कुछ लिखा हुआ हैं भी ये तश्वीरें हैं यहां पे लगी हुई हैं तश्वीर वगैराह--